इस फोटो मे मुझे बहोत सारे पत्थर दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में मुझे कॉपी किताब की दुकान दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बहोत सारे फल दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे कुछ मशीनें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे लोहे के गेट दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे खिड़कियां दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे पुरुष दिखाई दे रहें हैं।

इस फोटो में मुझे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो मे मुझे एक छोटा सा गार्डन दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा--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

इस फोटो में मुझे पर्दा दिखाई--

इस फोटो में मुझे मकान दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे कैमरा दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे टाइल्स दिखाई दे रही है।